और यहाँ पे एक कुवा बनाया गया है। जिसमे पानी देख सकते है। --

एक सलून है जहां पर सभी लोग आदमी लोग --